जिस तस्वीर में बंद दुकान दिख रहा है।

चेयर में बहुत सारे मनुष्य भी बैठा हुआ है सफेद रंग का दीवार है।

जो की अलग अलग रंग क है नीला हरा गुलाबी--

बहुत सारा सामान भी लटकाया हुआ है कोल भी दिख रहा है।

इसमें बहुत सारा दारू का बोतल रखा हुआ है।

शीशा और फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है एक टेबल और चेयर भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक हॉल दिख रहा है।

टेंट और गुब्बारा भी लगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में टेबल के ऊपर बहोत सारा मछली भी रखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिख रहा हैं। उसमें टेबल और चेयर भी है। चेयर के ऊपर तकिया रखा हुआ हैं और सोफा भी रखा हुआ हैं।

टेबल के ऊपर टिशू पेपर और नमक का बोतल भी है।

टेबल के ऊपर दवाई का बोतल भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में नीला रंग का प्लास्टिक बिछाया हुआ है।

दो औरत बैठा हुआ है और एक आदमी खड़े हो के है।

मुझे तस्वीर में थाली बर्तन का दुकान देख रहे हैं।

जिससे बहुत सारा कॉपी और बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

उसपे बहुत सारे काले रंग का कुर्सियां भी रखा हुआ है।

नीचे में सोफा के साथ ड्रॉर भी लगा हुआ है।

फायर सेवर भी लगा हुआ है। तस्वीर और कुर्सी भी रखा हुआ है। एक मनुष्य बैठा हुआ है। बड़े बड़े पेड़ पौधा है।

ऊपर में लाइट्स और एल_इ_डी लगा हुआ है।

पीछे में तीन मनुष्य भी खड़ा हुआ है।